उसका नाम शायद बी_पी चाव चावला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है।

जिसमे गाड़ियां आ रही है और जा रही है।

ये फोटो भी एक तालाब के या नदी के आसपास की फोटो है।

यह कहीं और की भी हो सकती मुझे नहीं पता इस बारे में--

ये विग्नान बुक सेंटर स्टेशनरी है जोकि होलसेलर है बुक्स के सामने फोटो में तो ऐसा ही लिखा हुआ दिख रहा--

आप को सिर्फ स्पोर्ट की टिकट कटवानी है और आप स्पोर्ट में कर सकते सवारी कर सकते हैं ये बहोत--